फैक्ट्री भी नज़र आ रही है ऊपर एक कैमरा लगा हुआ दिख रहा है कुछ बोर्ड लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

पास में कुछ बिना पलस्तर का घर बना हुआ दिख रहा है।

पोस्टर के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई नजर आ रही है।

नीचे अलमरिया लगी हुई है जिसमे समान रखा हुआ हैं पंखे टंगे हुए नजर आ रहे है।

ये बॉक्स के पीछे दिवाल है। दिवाल पर कुछ कागज चिपके हुए नजर आ रहे है।

कुछ डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं।

जमीन के ऊपर छोटे छोटे खंभे लगे हुए हैं हरियाली नजर आ रही है।

घर में ए जाली के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं बड़ी बड़ी लाइट के फोकस भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में बहोत सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं ये हॉल बलून से सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

बड़ा पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है।

जमे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नज़र आ रहा है पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें भगवान जी की फोटो नज़र आ रही है।

सोफे रखे हुए नजर आ रहे हैं सोफो के पीछे कुर्सियां टेबल रखी हुई नजर आ रही--

ब्रेड नींबू दो चम्मच प्याज के टुकड़े पनीर का पीस रखा हुआ नजर आ रहा है।

उनके हाथों मे एक मुरली है उनके सर पर पगड़ी बनी हुई है मोर का पंख बना हुआ नज़र आ रहा--

लगी हुई नजर आ रही है पीछे बहोत बड़ा बैनर लगा हुआ दिख रहा है कुछ कुर्सियां रखी हुई नजर आ रही हैं।

कुछ नंबर लिखे हुए हैं दुकान के पास में एक टूटा फूटा घर बना हुआ दिखाई दे रहा है घर के पास में एक झाड़ नज़र आ रहा है छत प प --

क़ृषि महाविद्यालय इंदौर लिखा हुआ दिख रहा है कुछ खेत जैसा दिख रहा है बंजर जमीन दिखाई--

यह इमेज एक पेट्रोल पंप की ली गई है।

जिसमें पेट्रोल पंप बना हुआ नजर आ रहा है।

पीछे ऊपर से लटका हुआ भी नजर आ रहा है।

लगी हुई दिख रहीं हैं एक स्टैचू नजर आ रहा हैं जिसमें--

पीछे एक खंभा नजर आ रहा है उसके पीछे एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।